यहाँ पे जो गेट लगा हुआ है इसका कलर पर्पल है एंड यहाँ पे कुछ डोरियां दिखाई गयी हैं| यह लाईट की डोरियां हैं| यहाँ पे स्काई भी हमें यहाँ पे दिखाया गया है।

इस इमेज में एक बड़ा-सा मंदिर दिखाया गया है मंदिर के पास यहाँ पे डेकोरेशन भी की गयी है लाईट की डेकोरेशंस है एंड यहाँ पे --

इस तस्वीर में हमें यहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाया गया है और यहाँ पर बड़ी सी बाउंड्री लगी हुई है यहाँ पे बाउंड्री में कुछ पेड़-पौधे भी लगे हुए है और हमें स्काई दिखाया गया है।

और कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाए गए हैं स्काइ दिखाया गया है इसके अलावा कुछ ट्रक भी दिखाए गए हैं जिनमे रेड एंड ग्रीन कलर दिखाया --

और यहाँ पे एण्ड कुछ ग्राउन्ड दिखाए गए हैं इस ग्राउन्ड में छोटे-छोटे धुआँ लगी हुई हैं और यहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाए गए हैं इसके अलावा हमें स्काइ दिखाया गया है स्काइ में हमें स्काइ ब्लू कलर दिखाई जा रहा है।

इस इमेज में हमे एक ट्रेन दिखाई गई है और ट्रेन के पास में यहां पे पटरियां भी दिखाई गई है और यहां पे ये जो स्टेशन है।